यह एक पुराने जजर बिल्डिंग है।

खेत जैसा दिख रहा है।

एक बजार दिख रहा है जिसमे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है।

जिस में कुछ लोग एक्साइज कर रहे हैं कुछ पेड़ दिख रहे हैं बहुत सुन्दर दिख रहा है ।

कुछ मछली रख के बैठा है मछली सेल कर रहा हैसर पे कपड़ा बाधे है ।